इस तस्वीर में हमे काफी सारे पौ पौधे नजर आ रहे है।

और बाजू में घर भी बना हुआ है और खुला आसमान भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक महल का दृश्य दिखाया गया है जो काफी बड़ा है।

ये तस्वीर में हमें एक हरा भरा मैदान नजर आ रहा है जिसमें एक बैठने के लिए टेबल रखा हुआ है।

वे मन्दिर लाल रंग का है और मन्दिर पर काफी सारे झंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं।